और दुकान भी है और बगल मे बिल्डिंग भी है और पोस्टर भी लगा हुआ है। श --

ये बहुत ही बड़ा जंगल है और बहुत ही घना भी है और इसमें देखिये आसमान कितने सुन्दर दिख रहें हैं।